एथि है जो बस है जो कि बस को एथि किया जा रहा है ।

और ये पूरा एथि भी है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।

जब की अच्छा लग रहा है देखने में खुबसूरत भी है जगह बोहोत सुन्दर लग रहा है।

ये बोहोत बड़ा एथि जो की लग रहा है की कौनो एथि स्कूल का है एम बैंक लग रहा है।

पूरा एथि है यहाँ का पानी के जगह है।

जो की बहुत अच्छा लगा है देखेने में सुन्दर है बोहोत सुन्दर उजाला है ऐसे लग रहा है --

और खुबसूरत है सब कुछ ठीक-ठाक है और ताज़ा लीची लग रहा है ये ताज़ा तोड़ के रखा गया है ।